दीवार सुंदर लग रही हुई है।

सामने लोहे की दीवार है।

बहुत सारा सामान है।

रखी दिख रही है एक मछली मार्केट है।

लोग मछली बेच रहे हैं।

हरे पेड़ है खंबा है।

इस चित्र में एक सड़क एक छत बनी दिख रही है लोहे का--

सेंटिंग बनी है पिलर खड़े हैं आसपास पेड़ हैं।